यह एक कार्यक्रम का चित्र है इस चित्र में--

बंद है और बाहर कुछ लोग भी खड़े हुए हैं।

टु झिरो सिक्स भी लिखा हुआ है।

कंप्यूटर भी रखे हुएं दिखाई दे रहे हैं।

मोमबत्ती के साथ अगरबत्ती भी लगाई गई है पीछे बहोत सारी मामबत्तियाँ --

और फर्नीचर पे एक पानी की केन भी रखी हुई है।

पीछे शेल्फ में बहोत सारी किताबें रखी हुई है।

हॉल सजा हुआ दिख रहा है प्रोजेक्टर पे गणेश जी की--

फोटो भी दिखाई दे रही है हॉल के बीच मे लाल रंग का कार्पेट --

कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

खाली मैदान दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक स्टैचू दिख रहा है।

मरिज दिखाई दे रहा है कुछ नर्स और डॉक्टर भी--

टूटी टहनियां भी दिखाई दे रही है जो सीढ़ियों के पास रखी हुई है।

फूलों की माला की दुकान दिखाई दे रही है।

लाल रंग के फूल की माला लगी हुई है।

इस चित्र में कुछ खटिया लाइन से लगी हुई है।

कुछ लोग दूसरी तरफ भी खड़े हुए--